और बस पड़ाव के बरंडा टाइल्स से लगे हुए हैं और वहाँ के होर्डिंग भी हैं।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

सामने बाहुत ज्यादा हीं पानी हैं पानी पानी में सारे घर हैं बहुत सारे घर हैं बहूत सारे आदमियां हैं बहुत सारे पड़े-पौधे हैं।

एक बेंच रखे हुए हैं एक आ दो कोल्ड कोकोला का दो स्ट्रेन स्ट्रिंग रखे हुए हैं।

ये भी एक किराना दुकान है और इसमे भी बहुत सारे समान हैं।

ये किरना दुकान हैं दुकान मे बहुत सारे समान हैं बहुत सारे और उसके जो आगे रैंक हैं वो पिंक कलर का हैं और एक बांस रखे हुए हैं।

गेट गेट के ऊपर लिखा हुआ है जिला परिषद डाक बांग्ला किशनगंज और गेट गेट बहुत ऊंचे हैं गेट के बगल में दो लाइट लगे हुए है।